बहोत सारे लोग हैं जो सब्जियाँ खरीद रहे हैं। कुछ लोग फूल खरीद रहे हैं।

बहोत ही सारे पेड़ लगे हुए हैं और एक लड़का है जो बॉउंड्री पर खड़ा होके बिल्डिंग के सामने नेट बांध रहा है।

जिसके सामने रोड निकला हुआ है और उस रोड पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

जिससे पानी बहता जा रहा है और बहोत सारे हरियाली है। बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं और कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं।

नाले से बहोत ही गन्दा पानी निकल रहा है और बहोत सारे बोतल पॉलिथीन व बहोत सारा कचरा डला हुआ है।